यहाँ से बहोत सारे सीढ़ियां नजर आ रही है जिस पे पीले कलर की जाली जाली वाली सीड़ीए सीड़ीए है और उस पे ब्लैक कलर की जाली लगी हुई है जीनों पे।

एक मल्टीप्ल बनी हुई है ये घर है यहाँ पर घर के बाहर वाइट कलर के जीने भी दिख रहे हैं और दो गेट नजर आ रहे हैं जो गोल्डन कलर के ब्लैक कलर की खिड़कियाँ हैं और --